पास में कुछ खंबे पे लाइट जल रहें है आस-पास में पेड़ नज़र आ रहें है सूरज भी नज़र आ रहा है और --

पास में काफी सारे घर नजर आ रहे हैं। पेड़ भी हैं बादल भी नजर आ रहे हैं।